इस तस्वीर में कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और पास में मुझे एक टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा दिखाई दे रहा है।

डमी दिखाई दे रहे जिसमे और एक बाहर की तरफ मुझे दो मोटरसाइकल दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति दिखाई दे रहा --

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा हैं पास में एक ट्रेन दिखाई दे रही है कुछ व्यक्ति और महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

एक और पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक फुटबॉल की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ अलमारियों के अंदर चप्पल व जूते दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ अलग अलग कलर के तोते दिखाई दे रहे हैं जो कोई पिंजरे के अंदर हैं ऐसा लग रहा है कोई चिड़िया वगैरह है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बच्चे और महिलाएं और कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं जो कोई --

कांच की अलमारियां जैसी दिखाई दे रही है और कोई लकड़ी की बनी हुई टेबलें दिखाई दे रही हैं।